दो साइड में इधर भी पत्थर है।

एक बड़ा सा होल है जो ब्लू व्हाइट कलर का पेंट किया गया है लाइट जल रहा है.

एक मोल है जिसमें ऊपर में लाइट लगल है व्हाइट कलर की जल भी रहे हैं.

पत्थर कलर से डिजाइन किया गया है.

पक्का का रूम है जिसमें दो खिड़कियां हैं.

दो पर्दे का डंडा लगा हुआ है.

एक बड़ासा हॉल है उसके अंदर जिम सेंटर है.

एक आदमी जिम कर रहा है और वहां पे मशीने रखे हुए हैं जिम का.

साउंड बॉक्स लगे हुए हैं दो आदमी चेयर पे बैठे हैं और आगे की ओर देख रहे है.

एक शेरवानी सोट हे जो हाफ होता हे एक वाइट कलर का यहाँ पे टेबल टाईप का फ्रेम रखा है.

और ढेर सारे जेंट्स और महिलाएं हैं।

यहाँ पे बिल्डिंग है। बिल्डिंग के बाहर मार्बल भी रखी है और बैनर लगल है जोनसन का --

एक दरवाजा है उसके आगे रोड टाइप में है।

कोंटर मे हे अंदर मे और एक मे लगाया गया हे चश्मा.